ये भी लग रहा है कि यह गुलदस्तों की दुकान है ऊपर की साइड में सफेद-सफेद लाइट लगी हुई है और एक छत भी बना हुआ है । आसपास में दीवाल है दीवाल पे सफेद कलर किया गया है जो गुलदस्ते है काफी कलर के भी है ।

यहां पर एक डेक्स रखी गई है | डेक्स के ऊपर बोहोत सारा सामान रखा गया है | जिसमें से एक कंप्यूटर है जो कि काले कलर का है |एक माउस जो भी काला कलर का है कंप्यूटर जो है वो जल रहा है और माउस भी जल रहा है।

यहाँ पर बहोत बड़ी दुकान है । दुकान को देखकर लग रहा है कि यह कपड़ों की दुकान है यहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे गए हैं और कुछ बैनर्स भी लगाए गए हैं ।

आसपास में कुछ रेलिंग्स भी लगाई गई हैं जो स्टील की है। नीचे की साइड में फर्श जो है वो टाल्स लगे हुए हैं। ऊपर की साइड में लाइट लगी है।

यहाँ पर पेट्रोल पंप है । पेट्रोल पंप पर दो तीन प्रकार की मशीन रखी गई है और ऊपर के साइड में जो है एक छत बना हुआ है काफी मोटा है और मोटे मोटे खंबे दिये गए हैं ।